हमें यहां एक स्टोर दिख रहा है।

और बीच में गोल सा कुछ खाली सा जगह है और ये कंस्ट्रक्शन साइट में यूज आता है।

और ग्लप्स पहना हुआ है और लड़की--

इस फूड स्टोर का कलर है ग्रे वाइट और रेड --

गाड़ी बाइक ऑटो भी है।

हमे यहां एक रूम दिखाई दे रहा है और ये रूम से बना हुआ है और इसमें हमें दो पर्दे दिखाई दे रहे है।

ऊपर में काफी सारा बॉक्स है जिसपे अलग अलग समान रखा हुआ है।

हमें यहां एक ट्रेवलर बस दिखाई दे रहा है और इस बस को बहुत सुंदर से सजाया हुआ है ईसका कलर है ऑरेंज ब्लैक व्हाइट ।

हमें यहां एक पेट्रोल पंप दिख रहा है और इस पेट्रोल पंप के अंदर हमें एक ट्रक और एक बाइक दिखाई दे रहा है।

नॉइस इस स्टोर में हम इस स्टोर में हमे टेबल फैंस भी मिल जाते है बड़े वाले और छोटे वाले भी और कारपेट वो सब। नॉइस

हमें यहां एक पब्लिक बाथरूम दिखाई मिल रही है।

इसे एक बुरी अम्मा देख रही है और वह बुरी अम्मा के पूरे बाल वाइट है।

और ये एक रनिंग ट्रैक पर दौड़ रहे है इसके आस पास--